ए नाले सामने कुछ लोग के बैठे ने सामने कुछ कंप्यूटर रखे गए ने--

कुछ बोर्ड लगाएं गए ने सामने एक बिल्डिंग है।